घर की छत दिखाई दे रही है जहा पर कै सारे खंबे बने हुए नजर आ रहे है और इन खम्भो के बीच बिछाई हुई दिखाई दे रही है कुछ नजर आ रहे है।

हमे क्लीनिक दिखाई दे रहा है जिसके लिए गद्देदार बेड लगा हुआ है नीचे की तरफ कुछ व्हाइट कलर की मॅट बिछि हुई दिखाई दे रही है मॅट के बगल मे खिडकी पर्पल कलर का पडदा--

हर एक रूम दिखाई दे रहा है जहा पर एक आदमी लेटा हुआ नजर आ रहा जिसके दोनों पैर में बैंडेज चिपका हुआ दिखाई दे रहा काफी सारी मलम पट्टी भी लगी हुई नजर आ रही है।

यह किसी घर की छत दिखाई दे रही यहाँ पर तीन औरते कुछ एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रही इन तीनो औरतो ने सेम पोज में एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रही तीनो औरतो ने नीचे मैट --

दिवार पर फैन लागया हुआ है और उसके बगल मै वॉच लागी हुई है जिसपर ढाय बजते हुए नजर आ रहे है पीछे की तरफ कूछ बलून्स भी लगे हुए दिखाई दे रहे है डॉक्टर काफी एज्ड दिख रहे है।

सामने की तरफ निळे कलर स्लाइडर खिड़की लगी हुई है जिसके नीचे से दिख रहा है दूसरी तरफ कुछ और मशीने भी रखी हुई --